और यहां पे बादल आसमान बादल इतने नजदीक नजर आ रहे हैं जैसे की ये--

यहां पे बिल्डिंग है जो ये बहोत बड़ी है।

यहां पे बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रही हैजो एक--

और यहां पे हाईवे जाने के लिए रास्ता है और आसमान में बादल हैं जो काले काले का--

और ये बिल्डिंग का कलर वाइट है चॉकलेटी है लाल हैऔर यहां पे भी फोर व्हीलर ठहरी है आसमान नीला नजर आ रहा है।

देखो हिंदू भगवान की भी फोटो हैयहाँ पे पूरी तरह से--

यहां पे बहोत सारे लोग ठहरे हुए हैं और यहां पे एक बिल्डिंग है जो यहां पे--

ऊपर सिम्बोल है और यहां पर बहोत सारी मूर्तियां बैठी हुई है ऊपर साइड --

बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैंऔर यहां दिन का उजाला नजर आ रहा है।

सी_सी_टी_वी कैमरे चार हैजो अलर्ट हैबीच में और आजूबाजू भी सी_सी_टी_वी कैमरे है जो चारों तरफ रखे हुए हैं।

और यहाँ पे सी_सी_टी_वी कैमरा दिख रहा एक अलमारी हैजिसके ऊपर --

शो के भी रखे हुए हैं पेड़ और यहां पर दरवाजा है जो अंदर जा सकते हैं।

और यहां पे एक टेबल है टेबल पे बोतल रखा हुआ है।

यहां पे ऑटो ठहरे हुए हैं जो यहां पे लाइन से और यहां पे बॉयस हैं।

जिम में रहती है जिम करने के लिए मशीन है साइड में भी मशीन है यहां पे और खिड़की है खिड़की ओपन हैऔर साइड में यहां पे दिवाल का कलर वाइट है।

यहां पे एक बैठने के लिए है जो टूल ।

बॉल कलर येलो है और यहां पे सामान रखा गया है।

वो ऑटो लिए हुए हैं हरी हरा कलर आउट की छत का कलर हलू है साइड में भी एक ऑटो है।

का कलर नीला हैऔर पीछे दीवार है एक लाइट चालू है।

यहां एक राग हैजो कांच का हैऔर लाइटिंग लगाई हुई हैऔर इस राग में ईत रखा हुआ हैजो बहुत खूबसूरत और बहुत--

दिमाग का कलर वाइट है लाइटिंग चालू हैऔर साइड में एक दरवाजा है।

रात का टाइमिंग है जो यहां पर शाम नजर आ रही है और यहां पे--

पहाड़ हैऊंचे ऊंचे जो यहां से हरे भरे है।

ऊंचे ऊंचे वादियां हैंऔर सूरज हैजो रोशनी दिखाई दे रही हैऔर यहां पे बादल हैआसमान मेंढक बड़े-बड़े--

यहां पर सिंबल हैजो बेल्ट के ड्राइविंग के यहां पे रूम है--